टेबल के ऊपर कुछ प्लांट्स रखे गए हैं।

जिनको एक के ऊपर एक रखा गया है।

एप्पल का शोरूम नजर आ रहा है जहां पर बहोत सारे एप्पल्स के नए मॉडल्स रखे गएं हैं।

सामने एक पीले रंग का और एक हरे रंग का--

इस चित्र में एक छोटा सा पानी का घाट दिख रहा है।

बहोत सारे युवक युवतियां बैठे हुए भोजन ग्रहण करते नजर आ रहे हैं।

चेहरे पर मास्क लगाए साइकल पर बैठा नज़र आ रहा है और पीछे एक व्यक्ति के हाथ में गिटार है।

इस चित्र में सामने एक व्यक्ति एक मैरिज हॉल के बाहर फोटो खिंचवाता हुआ नजर आ रहा है।

कुछ बेकरी का सामान जैसे बिस्किट --

इस चित्र में एक बड़ी सी दो मंजिली बिल्डिंगे नज़र आ रही हैं।

इस चित्र में तीन युवक और दो युतियाँ फ़ोटो खिंचवाती हुई नज़र आ रही हैं।

शटर के पास पांच लाल रंग के बड़े बड़े बक्से रखे गए हैं दूसरी तरफ--

जहां पर बहोत सारे मिट्टी के गमले और कांच के गमले नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में अभिलाषी हॉस्पिटल नामक एक बड़ी सी हॉस्पिटल की बिल्डिंग नजर आ रही है।

दूसरी तरफ एक बड़ा सा ट्रक शेड के बाहर खड़ा हुआ है।

कुछ लकड़ी के डंडों के ऊपर बैठा नजर आ रहा है।